ये एक बहुत ही आकर्षित मंदिर है।

यह लोग संगीत कारक हैंजिन्हें संगीत का अत्यधिक ज्ञान होता है|

किसी भी शुभ काम या मांगलिक कार्य होने पर लोग अपने घर में भोज-भात रखते हैं लोगों को आमंत्रित करते हैं तथा उनके साथ अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। ।